यह ओरिएन्टल ऑफ कॉमर्स बैंक का ए.टी.एम. है। यहाँ से लोगों को पैसा उठाने का सुविधा मिलता है और लोग ए.टी.एम. डालते हैं उनके बाद पिन नंबर मांगते है। उसके बाद यहाँ पे लोग पैसा को उठा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी लाभदायक चीज है।

यह छठ पूजा की जो मेन गेट होती है वह है छठ। छठ कार्तिक की पूर्णिमा में बहुत ही छठ पूजा बहुत ही बहुत ही अच्छा पर्व है जिनमें आदमी लोग बहुत से नियम धर्म से रहते हैं।